इस चित्र में एक मछली की दुकान दिख रही है। जहां एक बड़ा-सा थर्माकॉल का डब्बा रखा हुआ है। कुछ लोग मछलियां लेते हुए दिख रहे हैं।

ऊपर में स्टार से सजी हुई है। लाइटें लगी हुई हैं। हरे रंग के पर्दे चारों ओर से लगे हुए हैं।

और यह किताब की एक दुकान है बड़ी जैसी पीछे फ्रिज भी दिख रही है। स्टॅब्लिज़ेर भी दिख रहा है। बहोत सारी कि --

तीन गुंबदें दिखाई दे रही हैं। बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। आसमान दिखाई दे रही है।

और पत्थरे वगैरा भी दिखाई दे रही है। हरी-हरी पत्तियां भी दिखाई दे रही है। दूर रे पत पहाड़ --

पेमेंट्स बैंक नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सी तस्वीर भी है। आपका बैंक आपके द्वारा --

सामने में एक सफेद रंग स्कूटी भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहोत सारे कौवे दिखाई दे रहे है जो कि काले रंग के हैं और पेड़ वगैरा दिखाई दे रहे हैं। दूर में जंगल दिखाई दे रही है।

इस दुकान का नाम है। बहोत सारी किताबें अंदर दिखाई दे रही है। बहोत सारे पोस्टरें वगैरा लगी हुई है। सामने में एक सफेद रंग की बाइक भी दिखाई दे रही है।